रहे है जो फोटो को क्लिक किए हैं घर का ढलाई का काम चल रहे है देखने को मिल रहे हैं भी अच्छे-अच्छे फोटो को क्लिक किए हैं।

फोटो क्लिक किए है जो देखने में बैंक का नजारा है जो की बाहर से स्टेट बैंक का नजारा है ।